जहां पर बहोत सारी गाड़ियां दिखाई दे रही है।

यहां पर एक साइकिल भी दिखाई दे रही है।

बहुत सारी लड़ीयों से डेकोरेशन कर रखी है।

एक आदमी जोकि एक पादरी नजर आ रहा है वेह अपने हाथ में एक किताब लिए खड़ा है।

यहां पर बहुत सारे बर्तनों में तरह तरह के भोजन रखा हुआ है यहां पर बहुत सारी लाइटे जल रही है।

येह तस्वीर एक पार्क की दिखाई दे रही है यहां पर हरे भरे फूल नजर आ रहे हैं।

यहाँ पर भगवान गणेश की मूर्ति नज़र आ रही है।

यहां पर छोटे छोटे पेड़ पौधे नजर आ रहे हैं।

टेबल के ऊपर कांच का ग्लास दिखाई दे रहा है।